और इसमें बहुत सारा बुक दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत बड़ा फील्ड है।

और बगल में बहोत सारा आलमारी लगी हुई है।

इस दुकान के ऊपर में एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है।

इस दुकान बहुत अच्छा से सजाया गया है।

बगल में एक मकान दिख रही है।

इस जंगल में बहोत सारा पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

सामने बहुत सारा पहाड़ भी दिख रहा है।

एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

और इसका गेट बहोत अच्छा सजाया गया है।

इसमें बहोत सारा लाइटे लगी हुई है।

इस सब्जी मंडी में बहुत सारा सब्जियां दिखाई दे रहा है।

यह एक मछली की दुकान है।